global system preferences पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम library opac को अनुकूलित करने के लिए global system preferences set करना सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको library science का ज्ञान होना चाहिए
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए
आपको koha में admin access भी होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया इस website पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
शुरू करते हैं
superlibrarian bella और उसके password से login करें
koha homepage पर koha administration पर click करें
फिर global system preferences पर क्लिक करें
acquisitions preferences पेज खुलता है
बाईं तरफ enhanced content टैब पर जाएँ और उस पर क्लिक करें
enhanced content preferences पेज खुलता है
all सेक्शन में preference पर जाएँ
frbr editions के लिए ड्रॉपडाउन से show चुनें
opac frbr editions के लिए ड्रॉपडाउन से show चुनें
फिर amazon के लिए preference टैब पर जाएँ
मैं amazon टैग को खाली छोडूंगी
amazoncoverimages के लिए ड्रॉपडाउन से show चुनें
मैं amazonlocale को ऐसे ही छोड़ दूंगी
opacamazoncoverimages के लिए ड्रॉपडाउन से show चुनें
अगला html5 media के लिए preference टैब में
html5mediaenabled के लिए ड्रॉपडाउन से in opac and staff client चुनें
html5mediaextensions को ऐसे ही छोड़ दें
html5mediayoutube के लिए ड्रॉपडाउन से embed चुनें
library thing में preference टैब पर जाएँ
thingisbn के लिए ड्रॉपडाउन से use चुनें
सभी आवश्यक परिवर्तन करने के बाद पेज को सेव करें
पेज के शीर्ष पर save all enhanced content preferences पर क्लिक करके ऐसा करें
अब उसी पेज पर पेज के बाईं ओर स्थित ऑप्शन्स पर जाएं और opac पर क्लिक करें
opac preferences पेज खुलता है
appearance टैब में preference टैब पर जाएँ
libraryname के लिए संबंधित library के लिए नाम प्रविष्ट करें
मैं spoken tutorial library टाइप करूंगी
आपको library नाम प्रविष्ट करना होगा जिसे आपने बनाया था
फिर opacbaseurl पर जाएँ और डोमेन नाम प्रविष्ट करें मैं इसे टाइप करूंगी
आपकी वरीयता के अनुसार आप opac के लिए डोमेन नाम सेट कर सकते हैं
फिर opaccredits के लिए click to edit पर क्लिक करें
footer के लिए html टैग टाइप करें मैं यह टाइप करूंगी
फिर opacheader आता है यहां click to edit पर क्लिक करें
header के लिए html टैग टाइप करें मैं यह टाइप करूंगी
features सेक्शन में preference टैब पर जाएँ
फिर opacpatronimages पर जाएँ और ड्रॉपडाउन से show चुनें
फिर opacresetpassword पर जाएँ और ड्रॉपडाउन से allowed चुनें
privacy सेक्शन में preference टैब पर जाएँ
फिर opacprivacy पर जाएँ और ड्रॉपडाउन से allow चुनें
सभी आवश्यक परिवर्तन करने के बाद पेज सेव करें
पेज के शीर्ष पर save all opac preferences पर क्लिक करके ऐसा करें
अब koha superlibrarian अकाउंट से लॉग आउट करें
ऐसा करने के लिए पहले शीर्ष दाएं कोने पर जाएं फिर spoken tutorial library पर क्लिक करें
फिर dropdown से log out चुनें
अब opac पर हुए बदलावों की जांच के लिए: मैं अपना web browser खोलूंगी और
कृपया ध्यान दें यह url संस्थापन के समय दिए गए port number और domain नाम पर आधारित है
तो आपने जो उल्लेख किया है उसके अनुसार कृपया टाइप करें फिर enter दबाएँ
अब आप इस तरह के परिवर्तनों को नोट कर सकते हैं: opac होमपेज का शीर्षक welcome to spoken tutorial library
पेज के नीचे copyright@2017 spoken tutorial library mumbai all rights reserved
इसमें हमने सीखा कि library opac कैसे अनुकूलित करना है और
प्रत्येक module में आवश्यक सेटिंग्स को संशोधित करना
इसी के साथ हम tutorial के अंत में पहुँचते हैं
संक्षेप में
नियतकार्य के लिए opac में books का कवर इमैज जाँचें
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम: कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपने प्रश्नों को इस forum में post करें
स्पोकन ट्यूटोरियल परियोजना को एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद